एक काले रंग की बड़ी सी भैंस खड़ी हुई नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है।

बहोत ही बड़ी सी ऑफिस नजर आ रही है।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

इस झील के किनारे बहोत बड़े बड़े--

हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

चल रहा है तथा इस बिल्डिंग पर बरे बड़े हरे रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी स्टील की--

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

तथा इस ठेले पर सब्जी के साथ फल फ्रूट भी मौजूद है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ी सी दुकान नजर आ रही हैं।

मुझे इस फोटो पर एक कच्चा घर दिखाई दे रहा है।

तथा एक का रंग नीला वह दूसरे का रंग सफेद रंग का है।